रिचिये चींज़े दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर के ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर --

पर्पल दिखाई दे रहा है बहुत सारी मशीन दिखाई दे रही है बहुत से डस्टबिन दिखाई दे रहे है और भी बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है और बहुत कुछ दिखाई -----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

एक बल्ब दिखाई दे रहा है आसमान नीला दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है एक मीटर दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है ढोलक दिखाई दे रही है ढोल दिखाई यहाँ पे कुछ बैंचें दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर पिंक कलर और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है और बोहोत सारे कलर्स --

टेबल्स दिखाई दे रही हैं यहां पे बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे है जैसे व्हाइट ब्राउन ब्लू और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा।